नीचे पत्ते पत्ते रखे हुए है। पेड़ लगा हुआ है। अलग-अलग बसे खड़ी हुई है।

पेड़ पौधे हैं इसमें। पेड़ हैं। लाल मिट्टी है। नीचे लाल माटी दिख रही है।

पौधे लगे हुए हैं। पीछे एक ऐसा बना हुआ है किला जैसे बना हुआ है। लाल कलर के फूल हैं कुछ-कुछ में।

यह एक कॉलोनी का गार्डन जैसा दिख रहा है। पीछे मल्टी बनी हुई है। एक मल्टी व्हाइट --

घेरा बनाया हुआ है। नीचे मकान है। बोहोत सारे एक मंदिर भी दिख रहा--